पेड़ भी दिखाई दे रहे है बहुत बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है डोरी भी दिखाई दे रही हैं बहुत सारे खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे है बादल दिखाई दे रहा है।

रंग-बिरंगी लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है नीचे टाइल्स भी लगे हुए दिखाई दे रहें है।

नीचे फोम बिछी हुई भी दिखाई दे रही है सभी प्रकार की मशीने रखी हुई भी दिखाई दे रही है।

फ्रॉक टंगी हुई दिखाई दे रही है रुमाल दिखाई दे रहे सूट दिखाई दे रही है रूप मिलन का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है ।

चित्र में एक कपड़े की बहुत बड़ी शॉप दिखाई दे रही हैं इसमें गुड़िए कपड़े पहन के हुए खड़े हुए है स --

चित्र में कई सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पेट्रोल टैंक दिखाई दे रहा है।

एक पुरुष भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है चद्दर सेट दिखाई दे रहा है पीछे कई सारे मकान दिखाई दे रहे हैं सड़क दिखाई दे रही है।